दो लोग बेठे हुए है जिसके पास बोहोत सारे बुक है।

ब्लू और स्काई कलर का टी शर्ट पहने हुए है उसके पास रेड कलर में निचे में एक झोला रखा हुआ है और --

फुल पेंट पहने हुए है उसके हाथ में कुछ पेपर है और एक ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए है और जीन्स पहने हुए है और पीछे में एक --

छोटा सा कोई मॉल सा दिख रहा है जिसमे येलो कलर के शर्ट टी शर्ट लगे गुए है।

टी शर्ट्स टंगे हुए हैं बगल में कुछ कोट वगैरह भी टंगे हुए हैं जो कि रेड ब्लू येलो कलर में हैं।

कुछ रोड जेसे कवर किया हुआ है जो की वाइट कलर से है सामने में एक--

और पीछे में एक बिल्डिंग है जो की अल्ट्राटेक लिखा हुआ है येल्लो कलर का--

शाला टाइप का कुछ दिख रहा हैं जिसमें बहोत सारे गाये हैं सामने एक रेड कलर का--

अल्बेस्टर टाइप का दिया हुआ है जो की एक बाउंड्री ईटा से घेरा हुआ है पीछे में बहोत सारे घास दिखाई दे रहे हैं।

निक बोहोत बड़ा सड़क जेसा दिखाई दे रहा है जहा परी एक--

बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और एक वाइट कलर का घर भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर निचे में भी जेसे का पिक लगा हुआ है और ये अ ब्लू कलर में --

कार शोरूम दिखाई दे रहा है जहा रेड कलर का कार लगा हुआ है पीछे में एक ब्लू कलर के फोर चेयर लगे हुए है।

वहां पर रेड और वाइट कलर में बैलून से डेकोरेशन किया गया है तीन लोग दिखाई दे रहे हैं येलो कलर का पूरा बैकग्राउंड दिख रा है।

खण्डहर जेसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमे--

और बोहोत लम्बा सा खण्डहर टाइप का सुनशान सा दिख रहा है सामने से--

पेलेट पे रखा गया है जिसमे तीन चार कुछ कवाब टाइप के--

पकोड़े जेसे रखे गये है जिसको ये फ्लावर जेसा--

ये किया गया है और सामने में कुछ चटनी टाइप दिख रहा है जो की हल्का--

सी फेयरवेल पार्टी टाइप का कुछ दिख रहा है जहा पर एक--

अह से सात से आठ लोग हैं रेड कलर का एक खाली चेयर दिखाई दे रहा है।

मंडी टाइप के अ मेरून कलर का कोर्ट पेना हुआ और एक लोग है जो ब्लू कलर का फुल हैण्ड शर्ट पेरे हुए चुप से बेठे हुए सामने बोहोत सारे--

और एक लोग है जो जुक कर के परणाम करते हुए पीछे साइड में उसके पास में एक बेग दिखाई देरा है जो ग्रे कलर का है।

अ स्काई कलर का पैंट पहना हुआ है जो रेड कलर का शूज पहना हुआ है और एक लड़का व्हाइट --

बोहोत सारे गिफ्ट टाइप के बॉक्स लगे हुए है बोहोत --

अच्छे से जिसमे येल्लो कलर का बॉक्स है कुछ--

और निचे में एक डब्बा जेसा रखा हुआ है जो की रेड कलर ग्रीन --

एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ बाहर गार्डन में एक जेन्स है जो क्लीन करते हुए दिखाई दे रहा है जोकि स्काई कलर की शर्ट पहने हुए है।

ग्रे कलर में धोती पहने हुए सर पे कुछ स्क्राफ जेसा कुछ बंधा हुआ है उसके हाथ में झाड़ू है जिसे वो--

ग्रीन रेड यल्लो कलर में फ्लेक लगा हुआ है बोहोत सारी लेडीज निचे बेठी हुई है मेट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

एक लेडीज रेड कल ये कलर में अ कुछ सर पे दुपट्टा जैसा ली हुई है एक येलो कलर पहनी हुई है और एक हल्का--

और एक गिफ्ट शॉप जैसा कुछ लगा जहां सारे भगवान के फोटोस दिखाई दे रहे जिसमें एक गाए हैं शिव जी का मूर्ति है।

आ कुछ ताज़ा पार्टी टाइप गिटार वीणा ये सब रखा हुआ है जो रेड कलर में है।

और बोहोत सारे चेयर भी लगे हुए है जो ब्लैक कलर में है स्काई कलर स्टील --